और आदमी चन दिखाई दे रहा है --

अरे ये देखी बहुत सुन्दर लग रहा है।

और यहाँ के आदमी हमे दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग बनी हुई है अच्छी तरह --

बहुत बड़ा दुकान यहाँ पे।

ये बिल्डिंग बहोत बढ़िया लग रहा है देख के।

और यहाँ पे खड़ा है --

और लाइट भी जल रहा है और ये बहुत अच्छा-अच्छा --

लगा हुआ है |

मेरे घर भी बनी हुई है --

और पूरा हरा-भरा दिखाई दे रहा है --

और इधर भी है बिल्डिंग बनी हुई है अच्छी तरह से --

बाहर बहुत अच्छा लग रहा है देख के --

और इधर भी है आदमी सब दिखाई दे रहा है |

और इ बहुत बड़ा जिम क्लब है।

और ये भी देखने में अति सुंदर लगती है --

बुक भी है दुकान मे और बहुत अच्छा है |

गेट नंबर फाइफ है ये --

रोड बनी हुई है अच्छी तरह।

यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक का --

और लाइट भी दिखाई दे रहा है --

और यहां पे दवाई का दुकाने हैं।

और अतिसुन्दर दिखई दे रहा है।

एक बैग लटकाई हुई है।

और यहां ये पार्क बनी हुई हैं।

और यहाँ पे बोर्ड में लगी हुई हैं --

और यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं।

और देख के बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

पानी में रीति बहुत है --

ये बस स्टैंड है।

अ जो कि बहुत बड़ी बॉस स्टैन है --